ये हर का ए अस्पताल के ए हर का ए अस्पताल के दृश्य ए ये हा ये ह का ए एह महिला महिला के जनरल वार्ड रथे न ओहि हरे ये ह जनरल वार्ड मतलब एकर हॉस्पिटल के बात ए ये हा।